की एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है और गाड़ी के पास कुछ आदमी --

ए.टी.एम. की है ए.टी.एम. के बाहर कुछ औरतें और कुछ पुरुष --